गाय के खड़ी है एक बाइक खड़ी है एक बच्चा खड़ा हुआ नजर आ रहा है एक गट्टा बना हुआ है जिसमें पिंपल का पेड़ लगा हुआ है।

यहां पे हिमांशु ट्रेनिंग बुक सेंटर --

यहां पर काफी हरियाली नजर आ रही है और दूब भी लगी हुई है।

काफी खूबसूरत सा पारक बना हुआ है ये काफी पेड़ पौधे भी है इसमें एक रस्सी भी पड़ी है इसमें दूब भी लगी हुई है।

और यहां पे बहोत सारे पेड़ पौधे नज़र आ रहे है ऊपर चाल सीढ़ियां लगी हुई है दुकान भी है।

बहुत सारे मकान भी है जालीयां है यहां हो रहा है कुछ केवाड वगैरा सब लगे हुए हैं यहां पे दिखाई दे रहे है।

यहां पे दुकान में सामान पड़ा हुआ नजर आ रहा है और यहां पे पैकिंग में भी पड़ा है सामान।

एक गाड़ी खड़ी नजर आ रही है एक महिला खड़ी नजर आ रही है और एक सपा टाइप का बना हुआ है जिसमें गाड़ी भी खड़ी है।

यहां पर काफी खूबसूरत यहां पे माहौल सा बना हुआ नजर आ रहा है बहोत सारे पेड़ पौधे है खेजड़ी नीम --

इक्कर वगैरा लगा रखी है और यहां पे महिला बहोत सारी नजर आ रही है कुछ उस तरफ है कुछ इस तरफ है।

खिलौने से पूरे हुए नजर आ रहे है कुछ सामान भी पड़ा हुआ नजर आ रहा है।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

यहां पर परचून की या कुछ समान की दुकान है जिसमें बहुत सारे कार्टून पड़े हुए नजर आ रहे है सभी--

और यहां पे पेड़-पौधे भी बहुत सारे नजर आ रहे हैं ये पीछे एक हवेली भी नजर आ रही है बहुत बड़ी हवेली ताजमहल जैसा बन रखा है और यहां पे --

नो मास्टक नो एंट्री नाम भी दे रखा है और यहां पे इंद्रपूरण रसोई है जहां खाने खाने के लिए बना है।

जय भवानी ऑटो वर्कशॉप है हेतराम जी मिस्त्री है ओम जी मिस्त्री है यहां पे मतलब --

और यहां पे बहोत सारी डिजाइनिंग बना रखी है इन्होंने दरी वगैरा भी लगी हुई है और यहां पे --

बाडी ऑटो रिपेयरिंग हमारे यहां एक तू होंडा बजाज टी_डी_एम वेटिंग स्कूटी पेप यू --

पैक करके रखे गए है काफी सूट और साड़ियों का विकेट का सामान यहां पे पड़ा हुआ नजर आ रहा है।